में एक सैलून की दूकान दिखाई दे रही है सैलून की दुकान में कांच लगे हुए है लकड़ी का काउंटर बना हुआ है एक स्टूल रखा है स्टूल के ऊपर फ़िल्टर रखा हुआ है एक टी_वी लगी हुई है।

अ लिखा हुआ है प्रवेश वॉर प्रारम्भ का एक पोस्टर लगा है सामने दो पेड़ लगे है एक औरत काम करती हुई दिख रही है।

और सब्जी की दुकान के बाजु में एक साइकिल मोटरसाइकिल खड़ी है कुछ और गाड़ी और साइकिल खड़ी दिख रही है सब्जी के दुकान में करेला लौकी भाटा चुकंदर रखे दिख रहे है।

और भवन के सामने अ खम्बे लगे है खम्बो के बीच में टिन शेड लगा हुआ है भवन के स भवन के बाजु में एक--

जीप खड़ी हुई दिखाई दे रही है उनके सामने एक बहुत बड़ा मैदान है एक टीन _शेड लगा हुआ दिखाई दे रहा है टीन _शेड के नीचे बहुत सारे लोग --

इसमें एक मैदान दिखाई दे रहा है और मैदान मे--

मैदान में घाँस लगी हुई दिखाई दे रही है अ किनारे पर कटिंग वाली मेहंदी लगी हुई देखे दे रही है और उस--

एक बहोत बड़ा वाटर पार्क दिखाई दे रहा है जिसमे एक पूल बना हुआ है पूल में पानी भरा हुआ है कुछ लोग पानी के--

और अ और एक लड़की स्लाइड के ऊपर दिखाई दे रही है आस-पास कुछ पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है।

आते-जाते दिखाई दे रहै है सड़क पर एक बस खड़ी हुई दिखाई दे रही है जिस पर राज्य पद लिखा हुआ है बस कुछ पुरानी टूटी-फूटी सी दिख रही है।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

सड़क दिखाई दे रही है सड़क पर कुछ अ लड़ कुछ लड़कियाँ ओ कुछ आदमी दिखाई दे रहे है जो गले में बड़ा सा ढोलक टांगे है ढोलक बजा रहे है।